ये कॉलोनी बनी हुई है। और यहाँ पे कॉलोनी के सामने एक पार्क है। बड़ा सुन्दर पार्क है।

और मार्केट भी लगी हुई है। यहाँ मार्केट भी है और ये रोड है। रोड चलते हुए आदमी अपने आप को बड़ा समझता है और यह भी है कि जो यहाँ पे कॉलोनी बनी है। वह काफी खूबसूरत लग रही है और देखो दुकान भी अच्छी लग रही है।